फूल का दुकान लगा हुआ है जिसमे की ढेर सारी फूल है गुलाबी कलर का बैगनी कलर का पीला कलर का --

एक कटोरी मे चटनी है ढोंसा रखा हुआ है दो गिलास है स्टील का।